यह दृश्य एक मकान का है जो काफी खूबसूरत मकान बना हुआ है।

पीछे चक्का दिखाई दे रहा है जो काले कलर का है।